आसमान ग्रे कलर का है।

यह एक सुन्दर सा कमरा है जहाँं पर चार कुर्सियाँ रखीं हैं। बीच में एक मेज भी लगी हुई हे ।

कुछ लोग सर पर टोपी लगाए हुए हैं कुछ लोग बिना टोपी के बैठे हुए हैं। मस्जिद के सामने की तरफ एक पिलर नजर आ रहा है।

यह एक-एक मंजिला मकान है जिसके सामने की तरफ दो खिड़कियां है ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है।

है सामने एक आदमी मास्क लगाए अपने संतरों को उठाकर देख रहा है। एक आदमी पीछे की तरफ खड़ा हुआ है।

ये एक बाकेटबाल कोर्ट है। यहाँ एक बाकेटबाल पड़ी हुई है। सामन् --

ये एक गली है। इस गली मे बहुत गंदा पानी भरा हुआ है और कूड़े कचड़े का भी ढेर लगा हुआ है। सामने मकान बने हुए हैं।

में एक पाइप है। दरवाजे के दोनों तरफ लोहै की जाली की खिड़किया बनी हुई हैं।

यह एक फायर ब्रिगेड है जो एक मैदान में खड़ी हुई है।

यहाँं बहुत सुंदर हरी भरे पहाड़ हैं। आसमान में कुछ बदले नजर आ रहे हैं।

सामने हरी भरी घास लगी हुई है। आसमान --

एक तरफ एक्टिवा खड़ी हुई हे दूसरी तरफ साइकिल खड़ी हुई हे ।

यह एक दौड़ का मैदान है जहाँंँ पर बहुत सारे लड़के --

दौड़ लगा रहे है कुछ लोग ग्राउंड में बैठ कर उन्हें देख रहे है और कुछ लोग खड़े होकर देख रहे --

यह एक पुराना खंडर जैसा --